सब्जी का बाजार नजर आ रहा है जिसमे हमें --

लोग भी हमें नजर आ रहे हैं ।

इस प्रतिमा के सामने एक विश्राम स्थल भी देखा जा सकता है।

इस दूकान मे विभिन्न प्रकार की वस्तुए दिखाई पड़ रही है ।

इस चित्र में एक बस नजर आ रही हे बस के सामने दो पहिए वाले --

और इस भवन के इमारतों में कुछ चलचित्र --

एक लाल रंग की बस भी --

लम्बी है और --

मैदान में कुछ लोग भी देखे जा सकते हैं मैदान के चारों तरफ --

झील के चारों ओर काफी शिलाएं दिखाई दे रही है।

इस बाहन का रंग सफेद है।

भवन के सामने एक पुराना सूखा सा वृक्ष भी देखा जा सकता है ।

इस चित्र में एक मैदान सा दिखाई दे रहा है मैदान में एक बच्चा --